खिड़कियां लगी हुई है और बाहर बालकनी बनी हुई है और गमले रखे हुए --

यहाँ ईटे रखी हुई है जिन पर प्लास्टर नहीं हुआ --

यह एक रेल्वे स्टेशन है जहा से पैसेंजर इधर उधर जा रहे हैं एक रेल --

आती हुई दिखाई दे रही है और इसके ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है।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

इसकी दीवारों पर बहुत सी पैनिटंगे बनी हुई है और दो बालकनी है जिस्से हवा आ रही है।

टनल के ऊपर बहुत सारे पेड़ पौधे वह घाँस उगी हुई है।

यहाँ एक रेस्टोरेंट है जिस में बहुत से व्यक्ति खाना खा रहे--

एक नैनो है जिसके सामने --

भारत पेट्रोलियम है यहाँ बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई है जीस के सामने हाईवे निकला हुआ --

और इसके सामने एक मोदी जी का पोस्टर लगा हुआ है जिसके नीचे लिखा है जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं।

यह एक बिल्डिंग है जिसका नाम वेरेना है इस पर यलो अँड हल्का ब्राउन कलर पेंट है।

ऊपर के और स्टैन्ड बने हुए हैं इसके आसपास बहुत ही अच्छे गमले बने हुए हैं और इसके पीछे की ओर एक पेड़ लगा हुआ है।

यहाँ एक हाईवे है जिस पर बहुत सारी गाड़ियां इधर उधर जा रही है इसके पास एक पेट्रोल पंप है जहा --

एक व्यक्ति पेट्रोल डलवा रहा है और उसके बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे उगे हुए हैं और इसके ऊपर से लाइट की वायर जा रही --